छत्रपती शिवाजी महाराज का स्टेचू दिखाई दे रहा है लोहे के खंबे दिखाई दे रहे है वायर्स दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

एक शॉप दिखाई दे रहा है एक ठेला दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

हे हे कुछ लोग दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है लाइटस वैगेरे दिखाई दे रहे है।

बस का नंबर एमएच टवेंटी बीएल तीस बत्तीस लिखा हुआ है बगल मे बड़ा सा ब्रिज लगा है।

एक बड़ा कोटक महिंद्रा बैंक का है बैंक के सामने दो सेक्युरिटी गार्ड खड़े पास दो पेड़-पौधे लगे हुए है एवम कुछ दो पिल नीले रंग की लगी हुई है।

महत के सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो काले टी-शर्ट पेहना हुआ है अंदर कुछ लोग खड़े--

इनमे एक रैस्टौरेंट छोटा सा ठेला है। जिसमे आस छोटा सा आह कुर्सी बीर्सी लगाया है। बाहर में गाड़ी खड़ी हुई है।